यहां पर हम देख रहे हैं सरस्वती पूजा भी हो रहा है जिसमें लोग भसान में गए हैं।

यहाँ पे हम देख रहें है एक नया सा लग रहा है दुकान-वुकन है जिसमे स्वाद लिखा हुआ है।

यहाँ पर हम देख रहें है बुक का दुकान है जिसमे बहुत सारा भीड़ है छे आदमी है।

यहाँ पे हम देख रहे है बहोत अच्छा भी लग रहा है हमको देखने में अगल बगल में पौधा भी है।

यहाँ पर हम देख रही है कोई चीज़ का भीड़ भी है ।

यहाँ पर हम देख गए है वो बहुत ही बड़ा हमको दिखाई दे रही थी दुकान है ये लग रहा है किराना दुकान है।